ठीक ऐसा ही पार्लर एक हमारे घर के बाजू में भी है जहां हम अक्सर जाया करते हैं। पार्लर जाना थोड़ा अच्छी बात होती है।

इस तस्वीर में मुझे एक रास्ता नजर आ रही है और उस रास्ते के आजू-बाजू में बहोत सारे बड़े-बड़े और हरे-हरे पेड़ लगे हुए है।